और आस-पास हरे-भरे पेड़ पौधे भी है। इस पार्क के बीचो-बीच कुछ झूले भी डले है।

और यह प्रतिमा थोड़ी उँचाई पर बनी हुई है इनकी --

और यह देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे सर्विस सेंटर है यहाँ पर गाड़ियाँ भी और रिपेयरिंग --

और नहाने के लिए अति उत्तम व्यवस्था बनी हुई है यह पूल बहोत ही सुन्दर लग रहा है।

न् की इस चित्रण में दिखाया जा रहा है एक ज़ेबरा मैदान के बीचो-बीच अकेला पेड़ की छाँव में खड़ा हुआ है। जह ज़ेबरा चारो तरफ से लोहे की बाउंड्री और --

जैसे कि इस चित्रण में दिखाया जा रहा है कि यह किसी सब्जी कि दुकान --

लहसुन के बोरे और प्याज की बोरियाँ रखी हुई हैं इस पर एक लड़का बैठा भी हुआ है।

जैसा कि चित्रण मे दिखाया जा रहा है कि ये बोहोत बड़ा खुला हुआ स्कूल का चित्रण लग रहा है।